जिसके किनारे बहुत सारे ग्रील्स लगे हुए हैं।

यहाँ पे एक दो बड़ी दुकान नजर आ रहे हैं जिसकी अ बड़ी-बड़ी बोर्डस लगे हुई है |

यहाँ एक आदमी नजर आ रहे हैं हाथ में पेट्रोल के मशीन लिए हुए स्काई ब्लू कलर का कपड़ा पहना हुआ उन्होंने एक --

और दीवार लाइट ग्रीन कलर से पेंट किया गया है |